यहाँ ऊपर से गिने पत्थर रखे-- उसके अंदर है ये इसके लिए बैठे--

यहां से आना जाना का रस्ता है।